बगल की तरफ प्लास्टिक में कुछ और मर्चे रखे गए हैं एक तरफ लाल बोरी में सब्जिया रखी गईं हैं।

बगल में हरे रंग का एक डस्टबिन हैं पीछे की तरफ दो चार हरे पौधे भी लगाए गए हैं।

जिस पर कुछ लोग खड़े हैं।